यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो कि नारंगी रंग के वस्र धारण किये हुए हैं।

यहाँ पर एक कार्यालय दिखाई दे रहा है कार्यालय का नाम नगर परिषद जहानाबाद कार्यालय लिखा हुआ है।